यहां रंग बिरंगे गुब्बारे लगाए हुए हैं।

यह एक किताब की दुकान है इस दुकान में बहोत सारी किताबें रखी हुई हैं।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

यहाँ एक मॉल का फोटो है यहाँ पे आदमियों के कपड़े मिल रहे हैं।

यह एक स्विमिंग पूल का फोटो है।